खेत दिख रहा है चित्र में लड़का दिख रहा है खेत पे कई सारी फैसले उगी हुई दिख रही है चित्र में पेड़ दिख रहा है।

मुझे एक चित्र दिख रहा है चित्र में मुझे ग्राउंड दिख रहा है।

चित्र में मुझे कई सारे झंडे लगे हुए दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे कई सारे लोग खड़े हुए दिख रहे हैं।

मुझे एक चित्र दिखाईं दे रहा है चित्र में मुझे पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।